और पर्दे भी चार-पांच दिखाई दे रहे हैं.

और एक बड़ा लाइट हे यहाँ पोस्टर मे स्कूटर चला रहा हे एक लड़का और पीछे मे लड़की बैठी हुई हे.

और एक कुर्सी है और यहाँ बोतल भी रखा गया है और--

यहाँ पे एक बॉतल भी दिखाई दे रही हे.

एक येलो झंडों एक रेड झंडों और एक ब्लू झंडों दिखाई दे रहे हैं.

यहां पे एक इंसान समझा रहा है.

ये ये एक कान चीची स्थाशन--

और एक औरत कुछ मांग रहि हे उस टाइप से लग रही हे.

और एक अम्-एक औरत अपना पर्स से कुछ निकाल रही है यहां एक बुढ़ी भी--

अगल बगल में जंगल टाइप से हरा हरा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है और पत्थर से भी बने हुए हैं वहां पे पानी गिर रहे हैं.

यहां लोग भी दिखाई दे रहे हैं.

ये गेंदा का फूल का वारी है.

और पानी भी यहाँ पे हे और अलग बगल मे जंगल टाइप से दिखाई दे रहे हे और यहाँ काट कर सरक टाइप से बना हुआ हे कछुआ लोग के लिए.

एक इंसान हे जो मोबाईल मे बात कर रहा हे उसका गमछा येलो मे हे.

यहां गेंदा फूल भी दिखाई दे रहे हैं.

और यहां खिड़की भी है दो और बेंच भी हैं.

यहां मा पत्थर का मार्बल भी साइड में लगे हुए हैं.

ओर कुछ यहाँ हो रहा हे यहाँ बाग़ टेप --